यहाँ पे कुछ ब्रेंचे रखी हुई है और कोई कुछ ब्रेंचो पे बच्चे बेठे हुए हैं ऊपर चद्दर सेट है दिवार दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके नीचे कुछ भगवानों की मूर्तियां और झंडियां लगी हुई है।